ये लोग प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए सब अपने-अपने केबिन पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं यहां पलाय की छोटी-छोटी सी केबिन बनाए हुए हैं और कुर्सियां लगी हुई है।